ये एक गुफा के जैसे प्रतीत हो रहा है इसमें काफी सारे लोग खड़े हुए बैठे हुए नजर आ रहे हैं कुछ अंदर जा --

फोटो पे काफी सारी मछलियां नजर आ रही है मछलियां नजर आने का मतलब ये ये सभी एक फिश मार्केट या --

कहीं लगा हुआ है और इसमें झूला झूले लगे हुए हैं एक दो तीन चार चार झूले लगे हुए हैं काफी लोग आते जाते नजर आ रहे हैं।

इस पिक्चर में एक मूर्ति नजर आ रही है जो मेरे हिसाब से बुद्ध की मूर्ति है और काफी सुन्दर ब्लैक गोल्डन और हीरे जवारात से बनी हुई ये मूर्ति है।

यह पुलिस थाने का है जहां पर पुलिस थाने के बाहर में बहुत सारी गाड़ियां बाईकें के खड़ी हैं और दो --

का एक हिस्सा लग रहा है क्योंकि स्कूल मे ही ऐसी पेंटिंग कर कर बनाई जाती है जो की काफी सुंदर और अच्छा लग रहा है।

अच्छी जाती है इसमें अलग अलग कलर के फूल माला है गुलाबी है पर्पल है येलो है गेंदा फूल है।

ये एक फाउंटेन है फाउंटेन का मतलब है कि नीचे की ओर एक मोटर लगी हुई होती है जो की फाउंटेन में पानी --

द्वारा खरीदी जाती है काफी अच्छी तरीके से--

पानी में आ रहे है और एक नाव भी नजर आ रही है जोकि नाव का कोना है और एक किनारा नजर आ रहा--

इस फोटो में तीन बच्चे दौड़ रहे हैं रनिंग ट्रैक पर जो कि दो रनिंग ट्रैक लाल रंग का और सफेद लाइनों से बना है और साइड में ए --

ये एक मंडी है जहां पर सब्जियां बेची जाती है खरीदी जाती है।